ये एक मैरिज गार्डन है सामने की तरफ एक बड़ा मैरिज गार्डन नज़र आ रहा है जिसमें सामने की तरफ एक सोफा रखा हुआ है सोफे के साइड़ में बहुत सारी ग्रासीस रखी हुई है नीचे की तरफ--

मैट बिच्छी हुई है निचे की तरफ इसमें बूके और फ्लावर्स रखे हुए है जिसमे में रेड कलर के वाइट कलर के येलो कलर के पिंक कलर के वाइट कलर के फ्लावर्स रखे हुए उसमें दो गमले भी रखे हुए है ।

यह एक बन बिहार हैं सामने की तरफ एक बड़ा सा वन विहार नज़र आ रहा हैं जिसमे बीचों बिच एक मुर्गी वो मोर नज़र रहा हैं जो मोर बड़ा काफी हैं।

एक बस्ती है सामने की तरफ एक बस्ती नज़र आ रही है जिसमे चारो तरफ मकान बने हुए है उसमे ऊपर की तरफ एक बड़ा सा टावर बना हुआ है जो ज़मीन से बना हुआ है ये काफी ऊँचा टावर्स है ये टावर लोहे का है।

यह एक फाउंटेन है यह एक फव्बारा बना हुआ है जिसमे चारो तरफ चबूतरा बना हुआ है चबूतरा में टाइल्स लगे हुए है यह काफी खूबसूरत लग--

सामने की तरफ बड़ा सा झाड़ लगा हुआ है एवं बहुत सारी हरी भरी पतियाँ भी है नीचे की तरफ बैठ कर आराम कर रहे हैं ।